शादी पार्टी के मौके पे करते है आतिशबाजी जो है ख़ुशी के मौके पे की जाती है आतिशबाजी।

जो है म्यूजियम में जाते हैं देखने के लिए और जो है वहाँ की पुरानी वस्तुएं देखती हैं इतिहास --

कपड़े जो घर नहीं धोए जाते वो उनको तालाब में --

खेतो में चले जाते है हैं औ बनाते हैं जिसमें ऐ जो है स्टम्प --

एक नेशनल लेवल पर वह काम करता है डीमार्ट का जो मॉल्स होता है वो हर शहर में अवेलेबल है डीमार्ट बेयर में और हर चीज में प्रोडक्ट सेल्स करता है।

श्लोक बताते हैं कुछ बातें बताते हैं और इस --

बहुत साफ और सुतरा होता है।

बन जाता है और आटा जो है बहुत साफ और स्वक्ष --

साफ सुथरा पानी होता है और उसमें टाइल्स --

स्विमिंग पूल में नहाते हैं स्विमिंग पूल --

जो है स्विमिंग पूल का आनंद उठाते हैं और स्विमिंग पूल --

रंगोली दीपावली के शुभ अवसर पर बनाई जाती है जिसमें --

बीबीए एमबीए एलएलबी कई प्रकार की डिग्रियां होती हैं डिग्री कॉलेज बड़े लेवल का कॉलेज होता है जिसमें इंटर के बाद प्रवेश मिलता है और यह परस --

के मेंटेनेंस को चेक किया जाता है।

हर प्रकार का गैरेज होता है। गैरेज में मैकेनिक्स होते हैं जो --

एख डांस ट्रेनर होता है जो बच्चो की डांस करने के लिये --